और बोरियों में कंकर भर के रखी हुई है बहोत ज्यादा यहां पे समान को अच्छे से लोड किया हुआ है।

बाइक लगी हुई है पार्किंग पे गाड़ियां भी लगी हुई है और बहोत ही सुंदर तरीके से अच्छे से ऊपर --

ये एक बहोत बड़ा पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने की मशीन सामने रखी हुई है।

ऊपर बोर्ड लगा हुआ है जीवो राम कृषन सेवा सेवा--

अलग अलग काउंटर में रखे गए हैं और स्पीकर भी लगे हुए हैं।